पर्दे लगे हुए है। ग्रीन कारपेट रेड फायर बेस रखा हुआ है ऊपर ए_सी का बॉक्स है। माइक्रो का ऊपर दरवाज़े --

पेड़ है यहाँ पे हम्म हम्म रेड कलर की ईंटे वाली दिवार है।

एक सब्जी का शॉप है जिसमें गाजर है खीरे हैं आलू है।

राइट में छोटे मोटे पेड़ है। बड़े से पेड़ है। एक त्रिपाल तान के बनाया गया है। ऊपर से मिट्टी गिर रही है। मिट्टी के नीचे से है।

उसमें वाइट पर्दा लगा है छोटे-छोटे फूल चिपकाए गए हैं उसमें फूलों का अंदर लरी लटकाई गई है ग्रीन कारपेट बिछाए गए हैं।